यहाँ पे यह बच्चे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और एक डा नेत्र का --

फैसिलिटी है यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं।

और इस सैलून में दो नाई है यहाँ पे लोग बाल कटाने दाढ़ी बनवाने आते हैं।

यहां एक चर्च है। यह चर्च काफी पुराना है और बोहोत बड़ा भी है। ये चर्च देखने में बोहोत ही सुंदर है। यहां पे ईसाई धर्म के लोग आते हैं । प्रार्थना भी करते हैं। यहाँ पे साधना भी होती है।

यहां एक दुकान है जहां से हमें बहुत सारी चीज मिलती है| यहां से हम कोल्ड्रिंग खरीद सकते है बिस्किट मिक्सचर खरीद सकते है और यहां पे स्केनर की सुविधा है हम स्केन करके पे पैसे --